आसमान मे घने बादल दिखाई दे रहे है। कुछ घरे दिखाई दे रहे है। पेड पौधे दिखाई दे रहे है। बिजली कि तारे दिखाई दे रहे है।

बगीचा दिखाई दे रहा है यहा अलग-अलग प्रकार के पेड़ लगाए हुए है बोंड्री दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है बिजली की तारे दिखाई दे रहे है।

गड़िया दिखाई दे रही हैं पोस्टर दिखाई दे रहा हैं पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं ट्रॅक्टर की मशीनें दिखाई दे रही हैं।

एक बड़ा सा डॅम दिखाई दे रहा है डॅम के सामने कुछ पाणी दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है लाइट वाले खंबे दिखाई दे रहे है।

एक बड़ा खुलासा मैदान दिखाई दे रहा है जहां पेड पौंधे दिखाई दे रहे है। ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे है।

एक बहुत बड़ा घास का खुला मैदान दिखाई दे रहा है बाउंड्री दिखाई दे रहा है कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है लोहे के टावर दिखाई दे रहे है लोहे के खंबे दिखाई दे रहे है।

कुछ दुकाने व कुछ घर दिखाई दे रहे है गड़िया दिखाई दे रही है पेड़ पौदे दिखाई दे रहा है।

दो बड़े से बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं सीढ़ियां दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं आसमान में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सड़क दिखाई दे रही है।

तक दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है लोहे के खंभे दिखाई दे रहे हैं गाडियां दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।